कुल्हड़ रखा हुआ है सामने एक इंसान के हाथ में एक टंकी रखी हुई है।

कलर रखे हुए है डॉल हाउस रखा हुआ है स्माइली टंगी हुई है।